कलर की फोर वीलर जा रही हे।

लोखंड के सरिये गए हुएँ हैं दुर-दूर में पेड़ दिखाई दे रहें हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

यह एक मज़ीद की इमेज है यह इमेज में आसमान दिखाई दे रहा है मस्जिद का कलर सफेद दिखाई दे रहा है।

वहां पे एक ग्रीन कलर का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

और पुल में से कई सारे लोग नीचे देक रहें हैं साइड में पेड़ दिखाई दे रहा है।

यह एक पार्क की इमेज दीखाई दे रही है जहाँ पे सीम --

दोनो साइड पेड लगे हुए है नीचे से तीन लोग जा रहे हुए है।

यह एक किसी फंगशन की इमेजे है। यहाँ पे पार्किंग दिख रही है जहाँ पे कई सारी फोर व्हीलर खडी हुई है ओर कई सारे लोग उदरसे पसार हो रहे --

एक इलेकटिक वायर दीखाई दे रहा है एक लोखंड का सलिया दिख रहा है।

बहौत पत्थर हैं पहाड़ में तीन से चार लोग जा रहे हैं एक ने सफेद कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है।